ये बस स्टेशन लग रहा है मेरे को फोटो में और यहाँ पर चाट-गुपचुप वगैरा ठेला लगा हुआ है और कुछ व्यक्ति खाने के लिया वहा पर आया है बस वाले और बहुत भीड़ है दो मंजिला भीड़ है।